ड्रेस पहन के डांस कर रही है।

एस कोचिंग सेंटर ।

बनाई जा रही है और --

और यहाँ मैरिज हॉल है ।

पाइनएप्पल है तरबूज --

यहाँ पे सरकारी काम होते हैं और --

लाल कलर में है क्योंकि बांध आया हुआ है बारिश के वजह से।

और यहाँ पे बहुत सारे लोग पूजा करने के लिए आते है यह मंदिर --

और यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े तारामाछी लगाए गए हैं।

और यहाँ पर बहुत से लोग --